इस शो-रूम के अंदर बहुत से लोग दिखाई दे रहें हैं।

गुब्बारों का रंग लाल और ग्रे रंग का है।

यह कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पर बहुत सुंदर सजावट की गई है।

यहाँ एक भवन दिखाई दे रहा हे। जिसका रंग डार्क नीला हे।

अ इस पर पिलरों पर पुताई की जा रही है दो व्यक्ति है।

इस नदी के सामने एक पहाड़ दिख रहा है।

काले और सफेद रंग का टी-शर्ट पहन रखा है।

पुरे रूम का रंग नारंगी रंग का है।